इसमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं। एक खड़ा हुआ है एक बैठा हुआ है। एक महिला दिख रही है जो कि बैठी हुई है।

और एक कमरा है जिसमें ये सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लाइट है। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लाइट नहीं है।

थ्री व्हीलर ऑटो खड़े हुए हैं। ऑटो का रंग नीचे हरा है बीच में काला है।

अगल-अगल प्रकार की इसमें झूले लगे हुएं है बच्चे जो है सभी प्रकार के झूलों पर --

कुछ फल फ्रूट भी रखे हुए हैं। एक पेटीएम का क्यू.आर. बॉक्स रखा हुआ है।

गाजर आलू टमाटर लेसन प्याज गोभी बहुत सारी सब्जियां है।

दो लड़के बैठे हुए हैं। उनके साथ एक लड़की है। टेबल रखा हुआ है और बलून लगे हुए हैं।

एक कचरे की गाड़ी है खड़ी हुई है। कुछ कारें खड़ी हुई हैं।

एक कालम दिख रहा है। एक व्यक् लड़का खड़ा हुआ है। एक लड़की खड़ी हुई है।

और एक लाल कलर का एक बोर्ड भी रखा हुआ है।

उनके बगल में एक काँच लगा हुआ है।